ये फोटो में हमको टेबल और चेयर भी दिखाई दे रहा है चेयर का कलर ब्लैक --

होटल में हमें एक कैलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

ये हॉल में बहोत सारा आदमी लोग है।

यहां लाइट जलता हुआ भी दिखाई दे--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

फोटो में हम को दो तो साइकिल भी दिखाई दे रहा है यह फोटो में हमको दो बच्चा भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको एक टूल भी दिखाई दे रहा है।

हमको यहां पे बहुत सारा बहन लोग भी दिखाई दे रहा है हमको यहां पे भैया लोग भी दिखाई दे रहा है।

बाजार में अपने लोग भी दिखाई दे रहे है एक आदमी चेयर में बैठ के है।

हमको ये फोटो में बहुत सारा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

हमको ये फोटो में एक डांस हॉल दिखाई दे रहा है।

ये आदमी लोग का फेस को ब्लर कर के है।

हमको ये फोटो में बहुत सारा पेड़ लोग भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में हमको वायर भी दिखाई दे रहा है।

तीन चार आदमी का चेहरा भी हमको दिखाई दे रहा है।

काउंटर में लिखा हुआ है।

हमको यहां में स्ट्रीट लाइट भी जला हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां में बहोत सारा पेटी गिरी दिखाई दे रहा--

ये फोटो मे हमको ब्लू कलर का डस्टबिन भी दिखाई दे रहा है।

ये फोटो में आसमान ब्लू दिखाई दे रहा है।